ये है एक बड़ा ही मकान--

वाइट कलर के है और डार्क --

यहाँ एक सेर है और सेर बहुत बड़ा है|